यहाँ बाल कटवाने की दुकान है जिस पर एक आदमी बैठ हुआ है चेहरे पर उसने कुछ लगाया है ब्लीचिंग जैसा।

कुछ खड़े होकर देख रहे है छत डलने का काम चालू है सामने कुछ बिल्डिंगे दिख रही है पीछे की तरफ।